ये एक पार्ट हैं घर का।

और दरवाजा ब्राउन कलर रंग पर--

इनका इनके फ्लोर टाइल्स का बना हुआ हैं।

और ये इसके बैग्राउंड पर कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहां बहुत सारे दुकान है।

राइट साइड में ब्लैक एंड ग्रीन का फोंट स्टोरेज ट्रॉली है।

एक ऑटो भी दिखाई दे रहे है।

यहां पे इसका बैनर पर हेयर एक्सपर्ट प्रोफेसनल सैलून लिखा है।